खंडह्र ऐसी जगह होती है जहाँ पर पहले --

रहते थे समय होते हुए --

पोडियम भी रखा है जिससे खड़े होकर बोला जाता है माइक सेताकि सामने बैठे हुए सब लोगों को सही से सुनाई दे और उसमे क्रॉस का निशान भी बना हुआ है जब वो अच्छा लग रहा है।

इस फोटो में काफी चीज़ें दिखाई दे रहें हैं जैसे की एक ए इ-रिक्शा दिखाई दे रहा है साइकिल है मोटरसाइकिल है |